यहां एक स्कूल का फंक्शन हो रहा है जिसके अंदर बच्चे बैठे हुए है और अपने हाथो मे सर्टिफिकेट लिए हुए है और उनके टीचर्स पीछे खड़े हुए है।

ये येलो कलर के लगे हुए है और ये थेरेपिस्ट इनको ऊपर पीठ पर थेरेपी कर रहा है।

ये भी एक ड्राई क्लीन की दुकान है जहाँ पर अ काँच के दरवाजे लगे हुए हैं और सिल्वर कलर की अलुमुनियम अ फ अलमुनियम से फिट हैं और ब्लू कलर का एक गेट है।

ये एक क्लिनिक दिखाई दे रहा है जो सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक खुलता है। डॉक्टर एल.बी. प्रसाद अ हैं इसके डॉकटर चाइल्ड एंड फिजिशियन का है और यहाँ पे स्टूल रखे हुए है।

वाइट कलर के मीनारे दिखाई दे रही है जो मस्जिद के मीनारे है एक मीनारा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का और वाइट कलर का है और यहाँ पर आइड साइड बहुत सारे घर बने हुए है।